और ये बोहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे और इसमें जो है बरतन वगेरा सब है और उपर एक रखा हुआ हैआ अ --

और एक बहुत सारे सामान हैं किराना दुकान में हैं एक किराने दुकान वाले खड़ा हैं उजला शर्ट --

मुझे तो बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहे हैं और गुरुकुल डिग्री कॉलेज के पास में एक रास्ता गई हुई है और एक छोटा-सा --

के अंदर एक गार्ड है जो अंदर नही है और ट्वेंटी फ़ो ट्वेंटी फोर गुने सेवन लिखा हुआ है और ए.टी.एम. है इसके सामने।

यह काते-काते नीला है और बीच में पीले हैं और इसके अंदर बहुत ही सारा लड़की और लड़का है और योग कर रहे हैं।